एक गमले में पानी रखा है।

साइड में थैला वगैरह रखा हुआ दिखाई दे--

यहां पे एक मरीज सोया हुआ दिखाई दे रहा है।

दो डॉक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे पर्दा लगी हुई दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

इस गार्डन के आसपास पेड़ लगे हुए दिखाई दे और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

और सभी औरतें यहां पूजा करते हुई दिखाई दे रही--

यहां पे टेबल और कुर्सी रखी हुई है।

और ब्लू कलर की मेट लगी हुई दिखाई दे रही है।

आज करती हुई दिखाई दे दो औरतें दिखाई दे रही हैं।

सभी लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे--

कुछ व्यक्ति अंदर जाते हुए दिखाई दे--

यह एक माताजी की झांकी निकाली गई है यहां पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

यहां पे नीचे साइड में टोकरी रखी हुई दिखाई दे रही --

यह एक बाइक की सोरूम है। यहां पे बहोत सारी बाइक रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे सामने दरवाजे के ऊपर ब्लैक कलर के एक गेट लगी हुई दिखाई दे रही--

कुछ लोग सर के ऊपर वाइट कलर का टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ऑफिस है किसी चीज की।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ सामने दिखाई दे रहा हैं एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहां ए_सी लगी हुइ दिखाई दे रही है।

साइड में एक चार्जर लगी हुई है वहां पर मोबाइल चार्ज होती हुई दिखाई दे रही है ऊपर एक येलो कलर का कुछ है और नीचे कुछ--

यहां एक खेल का मैदान है जहां पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।

उन व्यक्ति के पास में एक रेड कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और एक ब्लू कलर की कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही--

यहां पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

गेट पे दोनों तरफ पर्दा लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक बुढ्ढी के बाल बड़ा खड़ा हुआ है।

यहां एक जिम सेंटर है।

यहां पे जिम करने के लिए बहोत सारी मशीन रखी हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उस बोर्ड में गोपालियन सिनेमा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे लोहे के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे पांच लोग खड़े हुए हैं।

यह एक क्लास रूम है।

यहां पे टेबल और बेंच रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

एक पंखा लगी हुई दिखाई दे रही है।

साइड में वाइट कलर के पेंट भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग बैठ करके अपने जांच करवाती हुई दिखाई दे रहे।

ब्ल्यू कलर की लाइट दिखाई दे रही है यहां पे पेट्रोल पंप के सामने दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे है।

और यहां पे एक बोर्ड भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रही है।

और बेंच को पे चार पांच लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।